पानी की बहाव भी बहोत तेज है आस पास में बहोत बड़े फील्ड ग्राउंड है।

यहां पे बाहर में देखिए बहोत सारे किराना आइटम है जैसे कि मिर्ची प्याज आ--

जो कि पूला पूरा कोचिंग ब्लू कलर का है सामने एक बाइक लगा हुआ है जो कुर्सी बालू गिट्टी --

ये पूरे दीवार पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर के फोटो लगे हुए है।

बोट का मजा ले रहे हैं। सामने से एक बोट--

जैसे कि आप देख रहे हैं साइड - साइड से बीच में लाल कलर का मैट लगा हुआ है।

सजावट बहुत अच्छा है स्टेज पे बहुत सारे लाइट लगे हुए हैं बगल में बहुत डिजाइन के कुर्सी भी लगी हुई है।

यह फोटो एक दवाई दुकान की है यहां पे तीन लोग है पहला लोग जो बैठा हुआ है दो लोग--

यह फोटो एक कपड़े की दुकान का है जिसका नाम है बुद्धा कलेक्शन ।

ये फोटो एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का है जिसका नाम राज--

यह किसी का घर लग रहा है दोनों घर में बहोत अंतर है।

बगल में एक छोटा सा पोखरा है जिसमें पानी इकट्ठा है।

पान छे बाइक और बड़ा सा मैदान नजर आ रहा है।

पीछे गए दीवारों के साथ अपनी फोटो खींच रहा है जो कि ब्लैक कलर का सेट पहना हुआ है।